पिज़्ज़ा की काफी सारी वैरायटी देखने को मिलती है जहां पर चाइनीस पिज़्ज़ा --

और यहां पर चार लोग पांच टीचर्स भी बैठे हुए हैं ये पीछे स्कूल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी प्रतियोगिता का आयोजन किया था।

मेले में इनको लगाया जाता है इसमे बच्चे--